इस इमेज में यहां पे एक दुकान दिखाई दे रही है जहां पे एक लड़का खड़ा हुआ नजर आ रहा है।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

इस इमेज में एक स्टेज दिखाई दे रहा है यहां पर एक आदमी गाना गाता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक बाउंड्री दिखाई दे रही है साइड में लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में एक जिम दिखाई दे रही है यहां पर एक लड़का कसरत करता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में बजरंगबली का मंदिर दिखाई दे रहा है सामने एक कलश भी रखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में एक काउंटर दिखाई दे रहा है और दीवार पर फिट ओ क्लॉक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में एक जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में एक बंगला दिखाई दे रहा है सामने देखिएगा यहां पर झूला लगा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज मे यहां पर एक मूर्ति दिखाई दे रही है और लाइटें जलती हुई नज़र आ रही है।

इस इमेज में सामने एक सैलून दिखाई दे रहा है यहां पर एक लड़का बाल की कटिंग करवाता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज मे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है और यहां पर दो कारे भी खड़ी हुई नज़र आ रही है।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

इस इमेज में यहां पर वाटर पार्क दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों पानी में नहाते हुए नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में यहां पर लाइब्रेरी दिखाई दे रही है जहां पर ढेर सारी किताबें नजर आ रही हैं।

इस इमेज में यहां पर बस स्टैंड दिखाई दे रहा है जहां पर लाइन से बस खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर टैटू की दुकान दिखाई दे रही है और बोर्ड टैटू नशा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में यहां पर किताब की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर एक लड़का सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है।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

इस इमेज में यहां पर सड़क पर कुछ कारे खड़ी दिखाई दे रही है और बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर बड़ा सा मॉल दिखाई दे रहा है और काफी सारे दुकानें भी नज़र आ रही है।

इस इमेज में सामने एक रोड दिखाई दे रही है जहां पर एक कार खड़ी हुई है और कुछ लोग भी नजर आ रहे है।

इस इमेज में यहां पर चट्टान दिखाई दे रही है बीच में एक लड़के बैठे हैं और एक लड़का खड़ा दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक बैंक दिखाई दे रहा है जहां पर एक व्यक्ति दरवाजे के पास खड़ा हुआ नजर आ रहा है।